है ये लड़की नृत्य कर रही है जो कुछ कलाकृतियां निभा रही है वहीं पास में एक कुर्सी रखी हुई है।